कलर में ब्लैक कलर में झाड़ है और नदी के बाजु में खेत है खेत में खंबा है।

उसके पीछे एक बकेट रखा है उसके पीछे एक दरवाजा है उसके पीछे कुछ रखा सा हुआ है नहीं दिख रहा है।

पराठे हैं पराठे प्लेट में लाल हरे कलर की लकीर है ऊसके सामने कुछ दिख रहे--

गोल्डन कलर का कुछ है। उसके पीछे एक पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर बहुत सारे झाड़ है।

वो पानी को नाव रहा है उसके ऊपर से बादल दिख रहे है बहुत--

उसके ऊपर पंख है तो तोरण लगाया हुआ है फूल है नीचे जो है जमीन पे फूल पड़े हुआ--

कुर्सी के नीचे का फर्श व्हाइट है देखने मे बहुत प्यारा दिख रहा है उसके पीछे भी लकड़ी का बना भी कुछ रखा--

स्प्राईट का बाजु मे एक डिब्बा रखा हैउसके बाजुमे अंडे भी रखा हुआ है उसके बाजुमें टेबल है। ऊपर लैस टंगा--

ऊस के सामने एक बोर्ड है कालासा उसके एक छापा हुआ है। ऊस के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे खानों मे सामान रखा हुआ है।